यहाँ पर मुझे कुछ कला का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं उधर से कुछ महिला चेक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मुझे बेंच मे कुछ रखे हुए कुछ बनाते हुए मुझे खिड़की भी दिखाई दे रहे हैं।

सोन कलर का दिख रहा है यह गुफा बहो-- बहोत ही सुरंग होगा जो आदमी यहाँ पर फस गया है।

यहाँ पर मुझे क्रिसमस कुछ अ गुब्बारे दिख रहे है यहाँ पर मुझे स्टार भी दिखाई दे रहे है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए है यहाँ पर एक अ --

और इस हाथ मे मोबाईल पकड़ा हुआ है। और यहा बहोत सुंदर दिखाई दे रहे है मुजकों।